हाय चित्र के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि बहोत ही अच्छा स्टूडेंट के द्वारा पार्किंग साइकिल किया गया है और द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश --

प्लांटों को माध्यम से देखा जाए तो यहाँ कचड़े-कचड़े किये गए हैं बगल में और एक बाउंड्री लगा हुआ हैं।

जे. सी. पी. की सहायता से एक स्थान को दिसरो स्थान से खोद ते हुए अपने टरबाइन में लगते हुए बो--

जो इसमें अपना मटेरियल बहुत ही अच्छा मिलावट हो जाता है।